यह एक स्कूल है जहाँ पर बहोत सारे बच्चे दिखाई दिए जा रहे है यहाँ पर कुछ प्रोग्राम रचा गया है जो की बच्चे कुछ डांस वांस किए जा रहे है।

एक बच्ची भी आई हुई है जो अपने हाथ में बेग लिए है और बहोत सारे व्यक्ति दिखाई दिए जा रहे है यहाँ पेड़-पौधे भी लगे हुए है बहोत ही अद्भुत ही डिजायनिंग बना हुआ है जहाँ पर बहोत ही मैदान पड़ा हुआ है बहोत ही --

यह एक जिम करने वाली मशीन है यहाँ पर बहुत ही अच्छी अच्छी तरह से जिम की जाती है यहाँ पर अपना शरीर बन जाता है देखिए ये फोटो मे बता रहा है।